अह सामने में एक लंबा सा नदी है उसके आस पा--

आज यहां पर नीचे ग्रीन कलर का कारपेट है व कुछ कुछ समान हैं बच्चों के खेलने के लिये।